ये कटिंग की दुकान है एक बच्चा बैठा हुआ है।

सामने एक काउंटर है जो की व्हाइट कलर का है एक कुर्सी लगी हुई है ऊपर एक फेन भी लगा हुआ है।

जो कि एक बाईट है और एक ब्लैक है एक ऑरेंज है। यहाँ पर काँच के शीशे के अंदर रखी गयी है।

और राइट साइड बाउंड्रियाज है।

यहाँ पर दो लोग खड़े हैं।

ये एक बड़ी सी दुकान है यहाँ पे बहुत सारी वाशिंग मशीन दिख रही है जो की वाइट कलर की है।